बैठने की बेंच जैसा बना है निचे चमकिला फ्लोर है भूरे रंग की टाइल्स लगी है।

मकान है ऊपर कवेलु डले हुए है बाहर लोग है इलेक्ट्रिक बोर्ड है बैनर लगा है।

बाइक खड़ी है लोग है रास्ता है पेड़ लगे है।

पौराणिक किल्लो जैसी इमारत है उसपर डिजाइन बना है।

छोटी-छोटी मूर्तिया रखी हुई है एंजल बने हुए है दीवार पर चित्र उतरे है।

कमरा है रिसेप्शन एरिया जैसा बना है बड़ा -छोटा टेबल रखा है उसपे सेनेटाइज़र की बॉटल रखी है।

कुंडी मे पौधा लगा है दीवार पर डिजाइन बनी है सामने रास्ता बना है।

गेट है बड़ा गेट बंद है छोटा गेट खुला है पेड़ है।

पेड़ पौधे लगे है हॉस्पिटल की बिल्डिंग पे डिज़ाइन बनी है गेट लगा है।

जे_सी_बी मशीन है बड़ी बड़ी मशीने है एक मशीन के ऊपर झंडा लगा हुआ है।

हॉल है चमकीला फर्श है बेठने की बेंच से बने है।